बेंचे पड़ी है। दुकान बंद है। शटर गिरा हुआ है। उस पर पेंट छूट रहा है।

एक जाल सा है। पीछे एक दीवार है उसके सहारे एक पेड़ है आसमान है खुला हुआ।

पर लोग बैठे हैं टेबल पड़ी हैं छोटी-छोटी उसपे बोतले रखी हुई हैं एक बाइक बीच में खड़ी हुई है।